एक केबिन बना रखा हो उसके ऊपर फराटा और सी_सी_टी_वी लगा--

चारों तरफ उसकी गोल गोल कुर्सियां है।

यहां पर एक रूम दिखाया गया है या फिर ऑफिस हो सकता है।

अ ऊपर शायद स्काई ब्लू की टी शर्ट पहन रखी है और पानी पी रहा है कोई चट्टान के ऊपर --

यहां पर एक रेस्टोरेंट दिखाया गया है जिसके अंदर--

तो कोई ध्यान से सुन रहा है।

यहां पर एक बस और एक अ--

यहां पर कुछ बिल्डिंगे वगैरह दिखा रखी है और इस तरफ--

जो कि पाइप लाइन की तरह ऐसे अंदर की तरफ जा रही है और सभी चीज यहां पर लौह की बनी हुई है।

छत पर छत डाल रहे हैं मसाला डाल रहे हैं।

छत पूरी कंप्लीट कर रहे है और--

और रंग बिरंगी एयरोप्लेन जैसी बना रखी है जिसके अंदर बच्चे--

दिखाया गया है जोकि भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग कार्यालय आयकर अधिकारी चरखी दादरी का ऑफिस --

पर ऐसा लग रहा पत्थर पड़े हुए है किसी ने फोटो को एडिट किया हुआ है और नीचे की धरती--

का ट्रक दिखाया गया है दूसरी तरफ जो की रेड कलर के काउंटर के साथ है और यहां पर यहां पर एक --

साइड में एक आदमी कई पर्ची को लेकर बैठा हुआ है और यह ब्लू कलर का कुछ--

चलिए देखते हैं किसका अच्छा प्रोजेक्ट है।